यह तस्वीर नयन फ्रूट्स ॲण्ड वेजिटेबल्स कि दुकान की हैं।

जहां पर दुकान के प्लेटफार्म पर अंगूर काशीफल लेसन और अ भुट्टे यानी कि मकई भी रखे हुए दिखाई दे रहे है।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

यहां पर सारी चीजें महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधनों की है।

यहां पर एक सोफा रखा हुआ दिखाई दे रहा है जो कम से कम छ सीटर है।

बाहर की तरफ एक टैम्पु दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ दो तीन बाइक दिखाई दे रही है।

मैदान हरा भरा है उसे पर दो गोल पोस्ट दिखाई दे रहे हैं जो खेल के लक्ष्य को दर्शाते हैं हमे --

यहां पर हमें दुकान में ऊपर की तरफ एक पंखा तथा कुछ लाइट्स भी दिखाई दे रहे है।

है ऐसा म प्रतीत हो रहा है जैसे ये कोई बारिश का मौसम है।

यहां पर बहोत सारे अलग अलग प्रजाति के पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

एंड अलग अलग रंग के प पंप रखे हुए हैं बाई तरफ नारंगी रंग के पंप --

यहां पर दीवार पर एक सूचना पट लगा हुआ है जिसमें उनके यहां मिलने वाली चीजों का नाम अंकित किया गया है।

लाइट्स के लिए ट्यूब लाइटस लगी हुई है कुछ पंखे चल रहे हैं बीच में ऐसा लगता है यह किसी इमारत के नीचे का हिस्सा --

तीसरी खाने में अलग से कुछ चीजें जैसे तेल इत्यादि रखे गए हैं सामने की तरफ काफी सारे पैकेट्स दिखाई दे रहे --

जो की पत्थर या संगमरमर से बने हुएं हैं जिसके अंदर काफी सारी दवाइयां और सामान रखे हुएं हैं।

एक साथ मे अंदर से आते हुए तीन व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर किसी समारोह के लिए तैयार किए गए सामियाने की है।

पीछे की तरफ रोडीस भी लिखा हुआ है दूसरी तरफ सर्विस सेंटर लिखा हुआ है पीछे की तरफ एक खिड़की भी है।

और एक पानी का कूलर भी रखा हुआ है यहां पर बहोत सारे अलग अलग रंगों और आकर की साइकिलों का प्रदर्शन किया गया है।

यहां पर कुछ लोग भी हैं जो कारखाने में पीछे की तरफ काम करते नजर आ रहे --

बाईक खड़ी हुई है पीछे की तरफ कई सारे हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

पीछे की तरफ एक झोपड़ी दिखाई दे रही है तथा साथ मे ही दो शिक्षक भी दिखाई दे रहे है।